यह दृश्य किसी सामुदायिक केंद्र के बाहर खड़े हुए व्यक्तियों का है।

यह दृश्य एक उद्यान का है जिसमें एक झूला लगाया गया है। झूले के अंदर --

दृस्य किसी हवाई जहाज के अंदर से लिए गए हुए हैं। यहाँ से दरवाज़े से चित्र लिया गया है और किसी --

पूरा सेत्र है वो हरियाली से परिपूर्ण है।

मोहल्ले का जान पड़ता है जिसके अंदर एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के रोशनी है एकदम पूरी तरीके से बाहर एक बस खड़ी हुई है।